साइड मे कुछ कॉलम भी दिख रहे है और ये दिन का समय है आसमान दिखाई दे रहा है धूप निकली हुई है।

इसमें एक साइकिल जैसी कुछ लटकी नज़र आ रही है जो इसमें लाइटिंग वैगरह भी जलती हुई दिख रही है।

सामने एक स्टैशनेरी बुक दुकान दिखाई दे रही है जहाँ टीन ऊपर मे टीन लगे हैं और साइड आइड में कुछ पाइप लगे हुए हैं लोहे के।